--और बहुत इस इधर एक बाजू मे दीवाल दिख रही है और बहुत सारी चीजे रखी गई है इधर बहुत सारा सामान है।

ये एक हॉस्पिटल है जहां पर एक नीचे मेडिकल है और अदर अंदर जाने का रास्ता है बाजु में दो दुकान है उसके पास में साईकिल खड़ी है।

यहा पर बुद्ध भगवान का मूर्ति दिख रही है।